यहाँ आई.सी.सी.आई. सी.आई. बैंक है।

इसमें पहाड़ जैसा दिख रहा है। बहुत सारा पेड़-पौधा दिख रहा है। घर भी है। यह नदी जैसा भी दिख रहा है। इसमें नारियल का पेड़ है। आसमान भी दिख रहा है।

यह हॉस्पिटल या कॉलेज हो सकता है।

नाम लिख के पोस्टर पर लगाया गया है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।